कंपनी है इसमें बड़ी-बड़ी दीवाले उठी हुई है दो आदमी खड़े हैंनीचे --

घास वगैरह है और बीच में पानी भरा है एक तालाब सा गया है और दीवाल वगैरह बनी हुई है।

ये एक ऑफिस है ऑफिस में टेबल वगैरह है बहुत सारी कुर्सियां डली हुई है।

पंखा लगा है और घंटे हैं बड़ी-बड़ी घंटे टंगे हुए हैं।

डांस सीखने की प्रैक्टिस कर रही है उसमें ऊपर हाल में पंखे लगे है।

वह एक खूबसूरत सी नदी है नदी में नीला नीला पानी दिख --

और हरी भरी घांस है बहुत अच्छे-अच्छे फूल लगे हुए हैं सामने एक --

और एक बड़ा सा घर है बहुत ही बड़ा हॉल है।

ऊपर लाइट्स लगी है और वाइट कलर दिख रहा है सामने एक टी_वी लगी है।

नीचे टेबल है बहुत सारी टेबल डली है पर्दे लगे हैं।

मो अ मॉल है यहाँ इसमें कपड़े मिलते हैं इस मॉल में--

और इस दुकान में लेडीज जेन्ट्स बच्चे सब के कपड़े मिलते हैं।

जिसमें गोली रखी हैं बहुत सारी ऊपर और गोलियों से खेलते हैं।

वह एक खूबसूरत सा महल है और बादल काफी अच्छा दिखाई दे रहा है यहां स --

सामने एक बड़ा सा घर बना है।

यह काफी बड़ा मैदान है सड़क पे एक टैक्सी आ रही है।

हहरी-हरी घास है चारों तरफ पेड़-पौधे हैं बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है सामने --

बच्चों के कपड़े मिलते हैं इसमेंसारासामान मिलता है मॉल मेंऊपर इसके पंखे लगे हैं लाइट्स लगी हैं।

और कुछ लेडिस है जेंट्स है बच्चे हैं और वह--

कुछ लोग खड़े हैं कुछ यात्री जा रहें हैं और मोटरसाइकिल साइकिल वगैरा अ--

कादियाड़ा होटल है ब्रेकफास्ट लंच डिनर कादियाना होटल होटल के बगल में एक ट्रैक्टर रखा है एक पेड़ भी लगा हुआ है।

वह एक पत्थर की चट्टान है उसके नीचे एक आदमी खड़ा है।

सामने एक होटल है किराना होटल है।

हॉल में नीचे का फर्स रेड कलर का है।

सामने एक बिल्डिंग बनी है बड़ी सी--

है लेडीज जींस बॉयस के बच्चों के कपड़े हैं और दुकान में एक आदमी खड़ा है।

बड़ा सा मंदिर है जिसमें साईं बाबा की मूर्ति रखी हैऔर अगल-बगल हरदौल जी की बहुत सी मूर्ति है।

वह एक अ कमरा है कमरा ममें--

वह एक डांस परफॉर्मेंस स्टेज है जिसपे अह डांस कर रही हैं लड़कियां लड़के हैं।

खिड़कियों में और बाहर कुछ पेड़-पौधे हैं छोटे-छोटे द्र --

गले में माला पहने हैं नेता लोग हैं।